यहाँ पे लोग सब आ फोटो खिचाते है और फिर अपने-अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होकर आते है।